यहाँ पर कुछ व्यक्ति एक साथ एक ग्राउंड में खड़े देखे जा सकते है एक बड़ा सा फील्ड जैसा देखा जा सकता है पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग देखा जा सकता है जिसका कलर हम खीरा कलर व लाल कलर में दिखाई दे रहा है ऊपर ब्लू कलर का आकाश दिखाई दे सकता हैं ।

पीछे दो कुर्सियां रखी देखी जा सकती है कुर्सीयों का कलर लाल दिखायी दे रहा है और पीछे बड़ा सा खिड़की देखा जा सकता है जिसमे पर्दा लगाया गया है ऊपर एक एसी रखा देखा जा सकता है नीचे टाइल्स बिछी हुई हैं पीछे एक गेट --

यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग जैसा कुछ देखा जा सकता है ऊपर कुछ बड़े बड़े आकाश जैसे देखे जा सकते हैं जिनमे कोई बादले देखी जा सकती है आगे कुछ गाड़ी खड़ी देखी जा सकती--

पर एक स्टूल जैसा कुछ चेयर जैसा देखा जा सकता है जिसके चारो तरफ कुछ कुर्सियां रखी गई है जो काले कलर की दिखाई दे रही है पीछे एक बड़ा सा बोर्ड देखा जा सकता है जिसका कलर हरा है बगल में कुछ आलमारी जैसा रखा गया है बगल में कुछ पोस्टर्स भी लगा हुआ हैं।

ऊपर कुछ व्यक्ति देखे जा सकते है कुछ स्कूटर खड़े देखे जा सकते है पीछे एक बड़ा सा होडिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ लाइटे लगे देखी जा सकते है अगल बगल कुछ बड़े पोल देखे जा सकते है जो सफ़ेद कलर से--

सफेद दिखाई दे रहा हैं तथा कुछ का कलर गुलाबी दिखाई दे रहा हैं एक बड़ी सी टॉवर जैसी देखी जा सकती है पीछे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग देखा जा सकता है जिसकी खिड़कियां भी देखी जा सकती हैं।